चार लेबर है तथा एक जो है वो फोन पे बात कर रहा है ये लेबर नहीं कोई मालिक दिख रहा है जो की जीन्स वगैरा में आए हुए है।

बाकि लेबर सबका कपड़ा जो है वो हाफ जीन्स हाफ पैंट और शर्ट या फिर गंजी में है।

बिल्डिंग को दिखाया गया है जो की बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया था पुराने टेक्नीक से डेकोरेट किया गया था।

में खड़ा है और ये जिम करने के बाद का --

जरूरतों को पूरा करता है ये छोटा मिनी मार्ट होता है।

ये लिए हुए है और ये बहुत अद्भुत दिखाई दे रहे है।

और बड़ा सा मैदान है बहुत बड़े-बड़े लेवल तक का क्रिकेट मैच होता है।